इसमें एक बड़ा टेप को काट कर रखा गया।

में एक लोहा से सपोर्ट भी दिया हुआ है।

उसका नीचे फर्श भी लगा हुआ है जिस पर एक व्यक्ति टेबल पर कुछ काम कर रहा है।

उसके बगल में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ।

यहां पे एक बड़ा योगा ग्राउंड है।

और उसके चारों ओर शटर भी लगाया गया है।

और दो व्यक्ति वहां पर खड़े हैं।

और उसे फूल पत्ती से भी सजाया गया है।

उसके दो बगल में कपड़ा दुकान है और इसके बगल में किराना दुकान है।

और उसके बगल में एक ए_सी भी लगा हुआ है।

यह एक तालाब है छोटा साइब का।

और यह एक रो रोड के किनारे है।

उसमे अपने हाथों से पाव रोटी बना रहा--

उसमें कुछ मशीन भी लगे हुए हैं।

यहां पे मिठाई रखने के लिए दो काउंटर बने हैं।

यहां पे एक सर्विक सेंटर है।